यहां पे ऊपर लाइट जल रही है और साइड में भी लाइट जल रही है।

यहां पे सामने खिड़की लगी हुई है दोनो स दो खिड़कियां लगी हुई है।

यहां पे सामने एक चेयर बिछ रही है।

यहां पे दो बैठने की के स्टूल भी है लकड़ी के।

सामने छोटी सी भीथ है उसके ऊपर भी पोस्टर लग रहा है।

वे ये ईटो का मकान है एक बहुत बड़ा--

यहां पे शैंपू भी रखे हुए है।

यहां पे एक शटर लग रहा है और अंदर डॉक्टर की दुकान है।

यहां पे ऊपर लाइट लग रही है यहां पे पोस्टर भी लगा हुआ है यहां पे कांच का दरवाजा है।

ये रोड पे स्कूल गाड़ी जा रही है।

एक लोहे का दरवाजा भी इसके सहारे लगा हुआ है।

औ यहां पे निरी सारी रिक्शाये खड़ी हुई हैं।

यहां पे किसी की शादी है।

यहां पे पत्थरों के बीच में दो व्यक्ति है।

ऊपर बहोत बड़ी छतरी लग रही है।

ए लड़की जा रही है और उसने ऊपर जैकेट पेहन रखी है नीले कलर की और नी नीचे पैंट पहन रखी है।